दो तरह का दुकान है। देखने से सुंदर लगता है और यहां लोग खरीदते है अच्छे खासे दाम में देखने से ही बहुत बढ़िया लग रहा है थैंक यू ।

एक दुकान है देखने से सुन्दर नजारा लग रहा है साड़ी का दुकान है लोग आते है फोटो घिचबाते है।